हमें यहां पे नीचे में जमीन देखने को मिल रहा है जमीन के बगल में हमें यहां पे लकड़ी देखने को मिल रहा--

यहां पे हमें एक आदमी देखने को मिल रहा है जो की--

विद्यार्थी बच्चे देखने को मिल रहा है ऊपर में हमें एक लाइट देखने को मिल रहा है ऊपर में हमें आ --